इस लड़की ने घरारा शरारा भी पहना हुआ है ।

यहाँ पे एक टेबल है।

एक मेन्यू बुक भी रखा हुआ हैं।

एक प्लेट में डोनट है एक प्लेट बन है।

और एक बड़ा सा घर जैसा है उसमें खिड़कियां है।

यहाँ पर एक एच_डी_एफ_सी बैंक है।

कांच का दरवाज़ा भी दिख रहा है।

मिट्टी के कुंडे हैं जिस पर पेड़ लगाए गए हैं।

सामने ऊपर एक बड़ा सा सफेद रंग का बोर्ड लगाया गया है।

लाल रंग की कुर्सी है खुला मैदान हैं।

सामने हरी भरी बहोत सारी झाड़ लगे हुए हैं।

और तीन आदमियां भी बैठे हुए नजर--

और यहाँ पर खम्भे भी कोल्लम भी है।

ऊपर सीलिंग पर एक पो_ओ_पी छोटा सा दिख रहा है।

स्विमिंग पूल के किनारे बहोत से लोग खड़े हुए हैं।

और यहां पर एक छोटा सा मंटप भी मारा गया है।

यहाँ पर स्विमिंग पूल है स्विमिंग पूल में बहोत सा पानी है।

खेलने की फिसल बन्डे हैं जो पानी में हैं।

पानी के दो डब्बे रखे हुए है।

और बहोत सारी दुकाने भी दिख रही है।

दिख रहे है सामने ही--

रोड पर आटो है कार भी है।

सेल्फ में बहोत सारे चिप्स और कुरकुरे के--

और ग्राउंड के चारो तरफ घर भी दिख रही है।

यहां पर एक बस दिख रहे हैं।

यहां पर बहोत सारे लाइटिंग्स लगी हुई है।

और यहाँ पर दिये भी मोमबत्तीजल रही है।